जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक प्ले-ग्राउंड है और यहाँ काफी सारे लड़के दिखाई दे रहे है और कुछ लड़के खेल रहे हैं और कुछ लड़के बैठे दिख रहें हैं।

थोड़ी-थोड़ी यहाँ घासें दिखाई दे रहीं हैं। आस पास काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं।

जैसा की देख सकते हैं सामने एरियल की पैकेट तेल की कनस्तरें और साबुन नहाने के कपड़े धोने के और भी काफी सारा सामान --

जैसा कि आप देख रहे हैं यहां कफी सारा पानी है और कुछ घासे हैं। आसपास काफी सारा कचरा दिखाई दे रहा हैं कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। काफी सारी बिल्डिगे दिखाई दे रही हैं।

जो की काफी बड़ी है। यह एक शहर की दिखाई दे रही है।

जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक स्वीट्स की दुकान है और यहाँ काफी सारे फ्लेवर हैं जैसे लड्डू बर्फी पेड़ा बूंदी और भी काफी सामान हैं।